एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है| बिल्डिंग के सामने कुछ चेयर लगी हुई दिखाई दे रही है | स्टील के स्टील के रैक दिखाया गया है जिसमे एक बोर्ड टंगा हुआ दिखाई दे रहा है

एक बड़ा-सा जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है जाल के ऊपर दो बच्चे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो काफी सुंदर लग रहे हैं।

दुकान दिखाई दे रही है। दुकान के ऊपर एक ग्रीन कलर टीन लगा हुआ उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं | एक जाल दिखाई दे रहा है।

ये एक बुक डिपो है जहां पर बड़ी-बड़ी किताबें रखी हुई दिखाई दे रही हैं जो काफी सुन्दर लग रही हैं यहां पर रैक बने हुए है बहुत सारी किताबें रखी हुई दिखाई दे रही है यहां पर कुछ पेन टंगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

एक सैलून है जहाँ पर एक दो ब्लैक कलर की चेयर दिखाई दे रही हैं। दो पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो पिंक कलर है। यहां पर एक मीटर लगा हुआ है।

यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो काफी सुंदर लग रहे हैं। किनारे पर काफी सारी मिट्टी दिखाई दे रही है।

मिट्टी का बना हुआ है काफी सुंदर लग रहा है।

एक दुकान है जिसमें बड़े-बड़े बड़ा सा बल्ब दिखाई दे रहा है। यहां पर येलो कलर का बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है।